फोन से वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक सामान तोड़ने की मशीन दिखाई दे रही है।

और पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ दिखाई दे रही--

और नीचे मैदान दिखाई दे रहा हैं।

फूल दिखाई दे रहा है और छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रिल दिखाई दे रही है।

इसमें मेरे को एयरटेल फोर जी का नाम दिखाई दे रहा है और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिसमे--

इस फोटो में मेरे को बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं जिसमें भिंडी हैं शकरकंद है मूली हैं शिमलामिर्च हैं।

मुझे इस फोटो में एक इंसान दिख रहा हैं और बहोत सारे फूल दिख रहें हैं।

अंदर की जा अंदर को जा रहा है और सीढ़ियां दिखाई दे रही है और बहोत सारे प्रोडक्ट --

दीवार पर पंखा दिखाई दे रहा है बल्ब भी दिखाई दे रहा है और कार --

इस फोटो में मेरे को बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे।

घर दिखाई दे रहा है और एक बोट दिखाई दे रहा है।

और ऊपर से चलने का रास्ता दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है ।

त्रिले है और बैठने के लिए है।

इस फोटो में मेरे को बहुत सारे छत्रियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मेरे को बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

जो थोड़ी गाड़ियाँ ब्लैक है और थोड़ी गाड़ियाँ वाइट है और लाइटिंग --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

और बहुत सारी बिजली की तारे तारे दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारी घास दिखाई दे रही है और बहुत सारी झाड़ियां दिखाई दे रही है।

फोटो में मेरे को बहुत सारी चेयर दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मेरे को बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और साइकिल दिखाई दे रहे हैं।

खिड़की दिखाई दे रही है और पर्दे दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी पानी की टंकियां दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहा है।

और लाइटिंग दिखाई दे रही है और फ्लैग --

इस फोटो में मेरे को बहुत सारी हारे दिखाई दे रही हैं।

और टेप दिखाई दे रही है और डब्बे दिखाई दे रहे हैं और--

और इस फोटो में मेरे को बहुत सारी क्रीम दिखाई दे रही है और लाइटिंग दिखाई दे रही है।

इसमें बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है और शीशे दिखाई दे रहे हैं।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

फोटो में बहोत सारे खिड़कियाँ दिखाई दे रही है इस फोटो में बहोत सारे सिशे दिखाई दे रहे --

इस फोटो में मेरे को एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहुत बड़ा बंगला दिख रहा है और मुझे इस फोटो में पेड़ भी दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में रोड दिखाई दे रहा है।

में केले का पत्ता भी दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में एक लड़के के बाल काटने के बारे में चर्चा की जा रही है।

और इस फोटो में एक घर दिखाया गया है और इस फोटो में आसमान दिखाया गया है।

और इस फोटो में एक राजकुमार का बोर्ड दिखाई दे रहा है और--

इस फोटो में लोगों को चलते हुए दिखाया गया है।